कार की गैरेज में काम होता है कार को ठीक करना।

कुल मिला के ग्राउंड में जाना अच्छी बात --

बैंक ऑफ़ बड़ौदा हमारे लिए काफी अच्छी बैंक है।

गांव की सड़के हमारे लिए काफी अच्छी लगती है। जी ये ऐसी सड़के हम लोग को काफी पसंद है जहां पर एकदम शांत वातावरण हो।

ये कैसे खेती किया जाता है नहीं किया जाता है।

यह ऐसे-ऐसे मजदूर को हम लोग की जरूरत है क्योंकि ये सब मजदूर काफी मेहनती होते हैं देख ही सकते हैं किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं।

इंसान को सारे पाप धुल जाते हैं।